हूं फोर व्हीलर कार है वो शायद वह खराब हो गई है वो गैरेज में रखा हुआ है।

और कुछ टूटी-फूटी समान भी दिख रही है।

मैकेनिक या कुछ मजदुर लोग दिख रहे है उ लोग शायद जला रहे है कुछ चीज यहाँ मक करखाना बड़ा कारखाना टाइप से है।

खड़े हुए है वो शायद स्पीच दे रहे है।

और सभी को कुछ बता रहे हैं बहुत सरे लोग जमा हैं यहाँ कैमरे भी कुछ लोग ले रहे है ।

लाइट भी लगा है ऊपर --

मुरर मूर्ति भी पिंक कलर का ऑरेंज कलर का साड़ी पेहनी --

जो भी है स्पाइसी ही बिक रहा वहां।

नहर टाइप से तालाब बहुत हरा है और आसमान भी बहुत सुन्दर दिख रहा है कुछ घर टाइप से बनाया हुआ है सजावट शो के लिए।

तीन खाना देने वाले लोग हैं और एक उम वाइट कलर का टी-शर्ट पहना है एक जेंटस ।

और यहाँ एक जेंट्स है जो सभी को सीखा रहा है।

लैपटॉप भी रखा हुआ है यहाँ पे कोई बैठा हुआ है लेकिन नहीं है।

काफी जूनियर लगते हैं अच्छे लोग लग रहे हैं और उनलोग शायद पर्सनल अपना फोटो किसी से बोले है कि खींच दो।